सीढ़ियां दिख रहा है ऊपर करकट लगा है बहुत सारा तार दिख रहा है जमीन पे टाइल्स लगा हुआ है।

पीछे एक मकान दिख रहा है हरा पेड़ पौधा दिख रहा है आसमान नीला दिख रहा है।

मकान का रंग सफेद दिख रहा है बहुत सारा सीढ़ी दिख रहा है हरा पैर पौधा दिख रहा है।

दीवार पीला दिख रहा है लाल अक्षरों में कुछ लिखा है।

इस तस्वीर में एक प्लेट दिख रहा है प्लेट काला दिख रहा है दो चाय दिख रहा है दो चम्मच दिख रहा है।

चार साड़ी मोड़ा हुआ है एक सफेद कुर्सी दिख रहा है पीछे और कई साड़ी दिख रहा है।

पीछे दीवार दिख रहा है दीवार पे घड़ी--

सभी लोग मूर्ति के सामने बैठे है।

इस तस्वीर में बहुत सारा ट्रक दिख रहा है ट्रक लाइन से लगा है।

एक मकान दिख रहा है मकान सफेद दिख रहा है।

हरा पेड़ दिख रहा है बहुत सारा मकान दिख रहा है।

लोहे का ग्रिल दिख रहा है चार चक्का गाड़ी दिख रहा है बहुत सारा झूला दिख रहा है।

पर्दा पीले रंग का है शीशे में--

बहुत सारा कपड़ा दिख रहा है।

पीला मकान हल्का-हल्का दिख रहा है।

इस तस्वीर में बहुत बड़ा फैक्ट्री दिख रहा है फैक्ट्री में सभी लोग काम कर रहे है।

बहुत सारा मशीन दिख रहा है मशीन पे कुछ लोग कार्य कर रहे है।

ऊपर कुछ बड़ा-बड़ा डब्बा सा दिख रहा है।

लोहे का ग्रिल और सीढ़ी दिख रहा है।

एक टेंपू दिख रहा है टेंपू पीला और काला दिख रहा है।

पीछे बड़ा-बड़ा कार्टून रखा है।

यह तस्वीर किसी मॉल का है।

काला टाइल्स लगा हुआ है पीछे एक बड़ा मकान दिख रहा है।

टंकी का रंग काला दिख रहा है आसमान नीला है।

एक कपड़े का दुकान दिख रहा है दुकान के बाहर कपड़ा टंगा है बड़ा-बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

दुकान में एक फ्रिज रखा है।

सामने एक बड़ा मकान दिख रहा है।

पोस्टर पे कुछ बना हुआ है।

लाइट जल रहा है नीचे ग्रीन कार्पेट दिख रहा है।

बहुत सारा कुर्सी दिख रहा है।

बहुत सारा कॉपी किताब दिख रहा है।

टेबल पे कॉफ़ी किताब रखा है।

सभी दुकान में टेडी बेयर टंगा है।

एक हरा दीवार दिख रहा है दीवार के नीचे--

आसमान सफेद दिख रहा है।

एक बड़ा दीवार दिख रहा है दीवार हरा दिख--

दीवार पे तस्वीर टंगा हुआ है हरा पौधा टंगा हुआ है ऊपर--

पेड़ बहुत बड़ा दिख रहा है नीचे मिट्टी दिख रहा है।

इस तस्वीर में केक दिख रहा है केक चॉकलेट केक है बहुत सारा बिस्किट लगा है बहुत सारा चॉकलेट लगा है।

एक दरवाजा भी है दरवाजा सेटल का है दरवाजा बंद है।

इस तस्वीर में बहुत सारा बाइक दिख रहा है।

बाइक रंग-बिरंग का है एक जनरेटर दिख रहा है‌।

कर्नाटका बैंक का पोस्टर लगा है।

गेट का रंग काला दिख रहा है कुछ लोग खड़े--

इस तस्वीर में बहुत सारा फल दिख रहा है यह फलों का मार्केट है।